लाल कलर की है और सामने काँंच का गेट लगा है जिसके अंदर एक--

ये एक लाल कलर की थोड़ी-सी डाली दिख रही है और उसमें ऊपर नीला--

ये सामने कुछ घास ब्लैक एण्ड व्हाइट दिख रही है और एक खम्भा है जिसमें ऊपर--

यहाँं एक बड़े गोल ऐ चबूतरा बना है जिस पे नीचे तीने-गो--

यहाँं एक हॉल है जिसमें टेबल लगी है जिस पर दो पेपर रखे हुए हैं एक ग्रीन एक नीला है।

यहाँं एक ये टेबल दिख रही है जिस पर सफेद कपड़ा है जिसके ऊपर बहुत-सी मशीनें और--

टेबल है जिसके ऊपर एक गुलदस्ता रखा हुआ है।

और कुर्सियाँ हैं जो चॉकलेटी कलर की हैं ऊपर एक झूमर लगा है बड़ा--

फूल वाले पौधे लगे हुए हैं ओर ऊपर नीला आसमान--

यहाँं बहुत सारी बिल्डिंगे दिख रही हैं जो अलग-अलग--

एं--पीले कलर की घास-स दिख रही है और बहुत सारे पेड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ बड़े पेड़ हैं कुछ छोटे पेड़ हैं ऊपर--

यहाँं एक साइकिल खड़ी हुई है जो लाल और पीले कलर की है जिसकी सीट काले--

वो खुला है ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है इसमें सी एन जी --

लिखा हुआ है और साइड में बहुत-सी कारें खड़ी हुई हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे एक पत्त--

ये रिबन लटके हुए हैं और तीन आदमी दिख रहे हैं।